जिस पिक्चर में टेबल चेयर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर पे एक रूम दिखाई दे रहा है उसमें एक टेबल भी है।

लाइट पोल्स दिखाई दे रहा है और खुला आसमान दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस पिक्चर में चेयर दिखाई दे रहा है और डेस्क दिखाई दे रहा है।

टेबल भी दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

रेड कलर येलो कलर वाइट कलर पिंक कलर में।

एक बैंक दिखाई दे रहा है उसमें पोस्टर लगाया गया है उसमे लिखा है फेडरल बैंक ए_टी_म ।

टेबल टेबल दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर का और दीवार दिखाई दे रहा है दीवार में व्हाइट बोर्ड लगा के है।

इसमें चेयर दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर में टिशूज दिखाई दे रहा है चम्मच दिखाई दे रहा है।

अलग अलग कलर में है कोई ब्लू कलर में है कोई ग्रीन कलर में है कोई रेड कलर में है और एक फैन भी दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारा पत्ता है ग्रीन कलर का।

जाली लगाके एक ड्रोन बनाकर है।

एक ठो लैपटॉप दिखाई दे रहा है एक ठो टेबल फैन दिखाई दे रहा है।

एक पोस्टर लगाई गई है बाहर में।

कोन भी दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में ग्रीन कलर में रेड कलर में।

और लाइट बल्ब दिखाई दे रहा है चार थू दो थू रेड कलर का है दो थू औरेंज कलर का है।

और लाइट दिखाई दे रहा है शीशा का स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है।

पीछे भी दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

मुझे इस पिक्चर में होटल दिखाई दे रहा है एक टेबल है चेयर है।

और एक ठो सोफा दिखाई दे रहा है और दो ठो चेयर दिखाई दे रहा है।

इस साइड में दो स्विच बॉक्स है और एक लाइट बॉक्स ।

एक फ्रेम भी है दीवार में--

बिल्डिंग के पीछे में बहुत बड़ा पेड़ है और खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

ओ लोग भी देखकर बहुत सारा आदमी लोग भी है और बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है उसके अंदर में मूर्ति है।

मेला का पीछे में बड़ा वाला पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

सामने दो घर दिखाई दे रहा है।

इसमें लिखा एक्सिस बैगेज क्लाइम ।

मुझे इस पिक्चर में एक घर दिखाई दे रहा है पत्ता और बंबू से बनाया हुआ इसमें बहुत सारा बंबू से बनाया हुआ पोल्स दिखाई दे रहा है।

इस झोपड़ी में बड़ा से सजा के है वाइट कलर में और बहुत सारा फ्लावर पॉट दिखाई दे रहा है।

और पानी दिखाई दे रहा है पांच जगह से।

बीच वाला मेकअप ब्यूटीशियन है और साइड वाला दुकान बंद है।

और एक साइड वाला दुकान खुला है उसमें बहोत सारा खाने का चीज सामान भरा हुआ है।

गाड़िया चल रहा है बाइक चल रहा है बाइक के ऊपर में आदमी है।

ये स्कूटी पर आदमी है पीछे बड़ा वाला गाड़ी है वाइट कलर में।

और ऊपर में ब्रिज दिखाई दे रहा है और सिग्नल लाइट भी दिखाई दे रहा है।

दो बॉक्स लोग में भी हैं और ईयर फोन लोग भी हैं।

और वो लोग को बंद करके रखने वाला जाली दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पाइप लाइन भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहुत सारा बोतल पड़ा हुआ है ग्रीन कलर में।

यहाँ दो ठो ड्रम दिखाई दे रहा है छोटा छोटा वाला ग्रीन कलर में।

इसमें बहुत सारा चेयर है टेबल हैं।

बहुत सारा फ्रेम लगा के है सुंदर सा फूल भी है।

लड़की लड़का एक साथ में बैठे हैं।

ब्लू कलर का शर्ट ब्लैक कलर का पैंट पहन के और तीन ठो पंखा दिखाई दे रहा है।

और एक लाइट बल्ब दिखाई दे राहा है और एक थू पौधा दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में

दो पंखा दिखाई दे रहा--